और दो नीला स्लीपर्स दिखाई दे रहा है।

ये गौतम बुद्ध का एक बड़ा सा स्टेचू है ।

एक बड़ा सा दुकान नजर आ रहा है बहुत सारे सामान नजर आ रहा है एक --

एक बड़ा-सा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।